और गेट बंद है रूम नंबर वन ।

ये पिंक कलर की भी है ग्रीन कलर की भी है और भी अच्छे अच्छे डिजाइन इस कंपनी में बनाए जाते है।

इस चित्र में यह एक इरशाद मेडिकल स्टोर है।

यहां पर लकड़ियों का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है लकड़ियां फट्टी--

इस चित्र में ये एक घर बनाया जा रहा है।

और बाहर एक कूलर रखा हुआ उषा कंपनी का।

और नीचे एक रेडी वाला केले बेच रहा है।